यह एक बैंक है जहाँ पर बहुत से व्यक्ति खड़े हुए हैं जिन में बहुत सी महिलायें--

यह एक दाढ़ी बनाने की दुकान है जिस पर एक आदमी दाढ़ी बनवा रहा है और एक आदमी--

यह एक जिम है जहाँ पर बहुत से लोग जिम करने के लिए आते है यहाँ पर कुछ आदमी--

कॉरिडोर के सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमेँ बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई है और नीचे ग्राउन्ड मे बहुत सी बाइक खड़ी हुई हैं।

खड़ा हुआ है जो वाइट शर्ट पेहने हुए है आदमी के पीछे बहोत से सामान लटके हुए है।

यह एक बुक शॉप है जिसमें बहुत से प्रकार की हर विषय की छोटी बड़ी किताबें रखी हुई है।

दुकान मे एक आदमी काउन्टर पर बैठा हुआ है और एक आदमी व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहने हुए खड़ा हुआ है और यू_पी_एस_सी का पाम्पलेट भी लगा हुआ है।